यहां पर नीचे में थर्माकोल के बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक पुराना जीप लगा हुआ दिख रहा है।

यहां पर कुछ बच्चों के पेड्स भी दिखाई दे रहे हैं।

तीन लोग यहां पर खड़े नजर आ रहे हैं।

पीछे दीवारों पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ स्ट्रीट लाइट लगी हुई देख सकते हैं।

यहां पर बहुत सारे बैनर लगा हुआ नजर आ रहा है।

आसमान में कुछ बिजली की तार नजर आ रही हैं।

यहां पे हम बहुत ही सुंदर कुछ बालकोनी देख सकते हैं।

एक ऑटो रिक्शा पार्क किया हुआ नजर आ रहा है।

यह एक बस स्टैंड का दृश्य है यहां पर बहोत सारे बस लगे हुए हैं हम देख सकते हैं।

यहां पर बहुत सारे लोग बिल्डिंग के बाहर खड़े दिख रहे है।

यहां पर एक बेकरी की दुकान दिखाई दे रही है।

सीलिंग पर सुंदर सुंदर लैंप लाइट्स लगी हुई दिख रही है।

यहां पर एक औरत बैठी हुई दिख रही है।

यहाँ पर एक सुंदर सा स्टेज बना हुआ दिख रहा है यहां पर तीन महिलाएं खड़ी दिख रही है।

एक बड़ा सा स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रहा है।

दीवारों पर कुछ फूलों की माला लगे हुए दिखाई दे रही हैं।

यहां पे बहोत ही सुंदर दृश्य दिख रहा है कुछ अगल बगल बोर्ड लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहोत सारे टेबल और चेयर दिखाई दे रहे।

यहां पर कुछ फलों का दुकान दिख रहा है यहां पर केले सेब अमरुद नजर आ रहे--

यहां पर हल्की हल्की धूप पड़ते हुए अब देख सकते है।

यह एक दुकान का दृश्य लग रहा है।

यहां पर एक सीधी सड़क नजर आ रही है।

यहां पर एक जगह मिट्टी इकट्ठी दिखाई दे रही है।

यह दिन का मौसम प्रतीत हो रहा है।

सीलिंग पर बहोत सारी सुंदर लाइट्स लगी हुई है।

यहां पे सुंदर सुंदर तीन गाड़ी नजर आ रहे हैं यहां पे कुछ पिलर लगे हुए दिख रहे हैं।